यहाँ एक बिल्डिंग है जिसके विंडोस और गेट ब्लू कलर से पेंट है।

यह गार्डन है यह मे ब्लाक एंड व्हाइट फोटो है और बहुत सारे फ्लावर्स प्रेस दिख रही है कुछ स्क्रीन पिक ऑरेंज येल्लो --

यहा मुझे फ्रूटीस दिख रही है कोको कॉला आइसक्रीम्स दिख रही है मिठाईया दिख रही है फेन्स दिख रहे है लोग पीछे एक लड़की दिख रही है।

बाइकस दिख रही हैं कुछ और ब्लैक कलर के गेट्स दिख रहे हैं कुछ शॉपस् दिख रही हैं पोस्टरस ट्रीस् दिख रहे हैं।

एक मैरेज कराने यहाँ पे हम पानी हैं और रेड कार्पेट सजा हैं ग्रीन ग्रासेस हैं।

यहां पर कुछ मुझे पत्थर शो हो रहे है जो चट्टान वाले है कुछ गीले पत्ते कुछ सूखे पत्ते है थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहे है यहां पे।

यहा पे मुझे गार्डन दिख रहा है जहा पे गार्डन की सफाई हो रही हैं कुछ पेड़ दिख रहे हैं मुझे ग्रीन-ग्रीन ग्रासेज दिख रही है पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं ये बेंच दिख रहे हैं ए_सी दिख रहा है मुझे--